का सेल्स करते हैं और लाइटें जली हुई हैं और ब्रेड का पैकेट पड़े हैं।

और चार पहियों का साधन पड़ा है और लाल झंडी लगी हुई है और ग्रीन कलर का पौधा लगा हुआ है।